ओ पीला सा है बहुत सारे टमाटर रखे हुए हैं ।

और अलमारी बनी हुई है सफेद कलर की है उनमें कुछ लाल रंग की बुके रखी हुई है सफेद रंग की है ग्रीन कलर की है।

काली कुर्सी है टेबल सफ़ेद कलर का है पीला कलर है ।

एक अस्पताल में एक आंतरिक रोगी कक्ष के सामने--